inkscape उपयोग करके trace bitmap in inkscape पर spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम निम्न करना सीखेंगे: raster और vector image के बीच अंतर विभिन्न raster और vector formats raster image को vector में बदलना
इस tutorial को record करने के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ ubuntu लिनक्स 1204 os inkscape version 091
इस tutorial में उदाहरण के रूप में उपयोग हुई images code files link में the गयी हैं
यहाँ tutorial को रोकें और अपनी machine पर images download करें
यहाँ here desktop पर 2 images हैं
linux png raster image है और linux pdf vector image है
अब मैं इन्हें खोलती हूँ
दोनों images एक सी दिख सकती हैं हम केवल image में ज़ूम करके अंतर पता करेंगे अब यह करते हैं
अब पहली image pixels की बनी लगती है क्योंकि एक raster image pixels से बनती है
लेकिन दूसरी image में pixelate नहीं हैं क्योंकि एक vector image paths से बनती है
कुछ raster image formats निम्न हैं: jpeg png tiff gif bmp आदि
कुछ vector image formats निम्न हैं: svg ai cgm आदि
formats जो vector और raster दोनों हो सकते हैं निम्न हैं pdf eps swf
अब सीखते हैं कि इस raster image को vector में कैसे बदलते हैं
inkscape खोलें अब हम raster image import करेंगे
file पर जाएँ और import पर click करें
अब path menu पर जाएँ और trace bitmap पर click करें
एक dialog box खुलता है mode टैब में हम विभिन्न विकल्प देख सकते हैं
निश्चित कर लें कि image चयनित है default रूप से brightness cutoff विकल्प चयनित है
preview में बदलावों को देखने के लिए live preview विकल्प check करें
जैसे कि आप preview window में देख सकते हैं brightness steps से आप brightness में अंतर कर सकते है
अब दूसरे विकल्प पर click करें जोकि edge detection है
जैसे कि name दिखाता है यह केवल edges यानि कोर ढूँढता है
color quantization कम किये हुए रंगों की boundaries के चरों तरफ अनुरेखण करता है
invert image बिटमैप के रंगों को उलटेगा अगर आपको लगता है कि उलटी हुई image बेहतर है
मैं invert image को अनचेक करुँगी
multiple scans multiple रंगों के लिए अच्छा है
brightness steps brightness में अंतर ज्ञात करता है
colors उल्लिखित रंगों की मात्रा ज्ञात करता है
grays colors के समान है लेकिन केवल grayscale रंगों को ज्ञात करता है smooth विकल्प को अनचेक करें चूँकि यह कोर पर ज़्यादा चिकनी लाइनें बनाता है
अब हमने सभी tracing विकल्प देख लिए हैं आप अपनी ज़रुरत के अनुसार इनमें से कोई भी चुन सकते हैं
मैं इस पर क्लिक करके colors विकल्प चुनूँगी
अब ok पर click करें और dialog box बंद करें
traced की हुई image मूल image के ऊपर बनती है
दोनों images देखने के लिए click करें और image को एक तरफ ले जाएं
image अब vector में बदल गयी है images में zoom करें
जैसा पहले उल्लिखित है पहली image पिक्सेल वाली हो जाती है यद्यपि दूसरी पिक्सेल वाली नहीं होती है
और हम paths को भी स्पष्ट रूप से देख सकते हैं
अब मूल image को डिलीट करें
image पर जाएँ path पर जाएँ break apart पर click करें
double image पर double click करें एक image के ऊपर images का stack यानि ढेर now जाता है
इसे दृश्यमान बनाने के लिए उन पर click करें और एक ओर लाएं
आगे सीखते हैं कि vector इमेजेस को edit कैसे करते हैं मैं काली image को edit करुँगी
अतः अन्य images को डिलीट करें
निश्चित कर लें कि image चयनित है
path पर जाएँ break apart पर click करें
fill and stroke में opacity को घटाकर 50 करें अब आप भागों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं
अब image के रंगों को बदलते हैं
आप अपनी कल्पना के अनुसार रंगों को बदल सकते हैं
अब सारे भागों को चुनें और opacity को बढ़ाकर 100 करें
उनको एक साथ समूह बनाने के लिए ctrl + g दबाएं
add hair कुछ hairस्टाइल जोड़ते हैं यह करने के लिए image चुनें और nodes tool पर click करें
शीर्ष पर nodes जोड़ते हैं add प्रदर्शित की तरह nodes को थोड़ा ऊपर लाएं
image को raster और vector दोनों formats में सेव करें
पहले इसे raster की तरह यानि png format में सेव करें file पर जाएँ और फिर save as पर click करें
name बदलकर imageraster करें save पर click करें
आगे image को vector की तरह यानि pdf format में सेव करते हैं
एक बार फिर file पर जाएँ और save as पर click करें
extension को बदलकर pdf करें name बदलकर imagevector करें और save पर click करें
अब desktop पर जाएँ और दोनों images को check करें
आप स्पष्ट रूप से दोनों images के बीच अंतर देख सकते हैं
इस tutorial के लिए इतना ही इसे सारांशित करते हैं
इस tutorial में हमने निम्न करना सीखा: raster और vector image के बीच अंतर विभिन्न raster और vector फॉर्मेट्स raster image को vector में बदलना
एक नियत कार्य में अपनी code files link में दी हुई train की image चुनें और इसे grays रंग वाले vector में बदलें
आपका कार्य इस प्रकार दिखना चाहिए
निम्न link पर उपलब्ध video spoken tutorial project को सारांशित करता है कृपया इसे देखें
spoken tutorial project team कार्यशालाएं चलाती है और online test pass करने वालों को प्रमाणपत्र देती है
अधिक जानकारी के लिए कृपया हमें लिखें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
हम इस tutorial के अंत में आ गए हैं आई आई बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य आपसे विदा लेती हूँ हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद